यह एक बस स्टैंड दिख रहा है।

और एक आदमी कहीं जाता हुआ दिख रहा है।

यहां पे एक भी गाड़ियां दिखाई नहीं पर रही हैं।

जहां पर कुछ आदमी सामान खरीदते हुए दिख रहे हैं।

और कुछ पंखे और लाइट्स भी दिख रही हैं।

और वाशिंग मशीन फ्रिज --

और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारी लाइटें भी दिख रही हैं।

और कुछ पोल भी दिख रहे हैं।

और कुछ आदमी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं।

यह एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जहाँ पर एक ऑटो --

में पेट्रोल डालते हुए अ भैया दिख रहे हैं।

और कुछ औरतें झाल बजाती हुई झाल बजती हुई दिखाई पर रही हैं।

मौसम बिल्कुल साफ है और कुछ पेड़ पौधे भी हैं।

यहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई पर रहे हैं।

और कुछ बच्चे साइड में बैठे हुए हैं।

यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई पर रहे हैं।

ये लोग नीचे घांस पर बैठे हैं।

यहां एक औ दो औरत दिखाई पड़ रही है।

यह लोग नीचे की ओर झुके हुए हैं।

कपरे खरीदते हुए दिख रहे हैं।

और कुछ लाइट्स भी लगी हुई हैं।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देखे जा सकते हैं जो व्यायाम कर रहे हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है।

जहाँ कुछ शख्स दिखाई पर रहे हैं।

और अ यहां पर यमुना का पानी भी देखा जा सकता है।

और कुछ नाव चलाते हुए वे शख्स भी देखे जा सकते हैं।

और यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई है।

यह एक बस स्टैंड दिखाई पड़ता है।

और कुछ बाइक्स भी लगी हुई हैं।

और बहुत सारे पोल्स भी दिखाई--

यह एक कैफे है जहाँ की दीवार बहुत सुंदर है।

यहाँ पर बहोत सारे लाइट्स भी दिखाई पर रहे हैं।

यहाँ दो खिड़कियाँ भी दिख रही हैं।

जिसके नीचे एक ग्रिल रखा हुआ है।

यह एक चिड़िया घर है जहां पर बहुत सारे हिरण दिखाई पड़ सकते हैं।

यह एक पेट्रोल पंप दिखाईपर रहा है।

यहाँ पर कुछ पेट्रोल डालने वाले मशीन भी दिखाई पर रहे हैं।

यहाँ कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यह एक तो एक रूम है जहाँ पर बहोत सारे लाइट्स लगाए हुए हैं।

और कुछ द शख्स भी दिखाई पर रहे हैं।

अंदर की ओर कुछ शख्स भी दिखाई पर रहे हैं।

यह एक पिनक डांस स्टूडियो है जहां पर--

दीवार का रंग पीला है और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है।

और ऊँ कुछ टेबल कुर्सी भी देखे जा सकते हैं।

दीवार का रंग वाइट है और--

पन्द्रा अगस्त मनाया जाया अम्म देख अ देखा जा सकता है।

यह एक कार का शोरूम है।

और एक सीढ़ही भी देखी जा सकती है।

यहाँ एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी है।

यह एक मस्जिद के ऊपर से लिया गया तस्वीर है।

जिसके अगल बगल बहुत सारी बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं।

जहां पर एक पैथोलॉजी नाम का बोर्ड भी लगाया हुआ है।

यहाँ पर कुछ सख्त भी देखे जा सकते हैं।

यह एक हॉल है जहाँ पर शादी--

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहे हैं।

यह एक चिकन फौर्म है।

यह एक पार्क है जहाँ पर एक बच्चा हाथी के ऊपर --